ब्लैक कलर है व्हाइट कलर उसके सामने ईंटे वाला घर बना है जिसमे काफी सारा छत्त में समान रखा है और झण्डा भी लगा हुआ है ब्लैक कलर पाइपे भी रखी हुई है नीचे कपड़ा--

और ऊपर एक झालर लगी हुई है और मीनार बनी हुई है। इसमें और राईट साइड देखेंगे एक पेड़ निकला है और मंदिर के पीछे भी काफी सारे पेड़ निकले है। मट्टी वाली जमीन है।

यहाँ ढेर सारी लाइन से कलरफुल बाइक खड़ी है ब्लैक ब्लू रेड कलर पीछे टाइल्स लगी हुई है। लेफ्ट में चेयर रखी --

ऊपर साइड देखेंगे सीलिंग है पाइप - वाइप बहुत सारे गए है व्हाइट कलर और लाइट लगी है बहुत सारी फैन ए.सी. या यहाँ लगी हैं पिलर व्हाइट कलर है और बहुत सारा सामान सामने रखा हुआ है जो की लोग खरीद रहे है ।

यह एक ऑटो है रेड कलर की जिसमे देखेंगे स्टील वाला एक काउन्टर लगा हुआ है ऊपर रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक ढोसे की दुकान है और लेफ्ट में देखेंगे तो एक दीवार दिख रही है उसके पीछे घर दिख रहे है ऑटो के पीछे घर बना हुआ है व्हाइट कलर जिसमे ब्लैक कलर का गेट है प्लस का निशान है सामने एक एक्टिवा खड़ी --

के पास और मंदिर के ऊपर एक ब्लैक कलर की टंकी रखी गई है और लेफ्ट में हरे कलर का दरवाज़ा लोहे का घर का उधर अन्दर और सारे पेड़ लगे हुए है काफ़ी बड़े-बड़े घने-घने और राइट साइड एक घर बना है जो कि ईटे का --

यह एक भगवान की मूर्ति है जिसमे इनकी माता है और ये पीछे पर्दे लगे है व्हाइट कलर और ये बड़ा सा मुकुट पहना हुआ है पीछे गुलाब वुलाब के फूल से डेकोरेशन हुआ है।